रास्ता ह उ उ नीला कलर के हईई।

आदमी हरियर शर्ट पेहनले हई टेबुल हईई।

पीछे किछु के फोटो हई आदमी सब हई इ।

फूल होययय स्कूल में लड़की सब होय लड़का सब हय।

घर हई इ घास हई इ दुब्बी हईई।

चश्मा लगैलै हई केस बांधले हई बैग टांगले हई लड़का सब बहुत हई लड़का --